यहां पे हर उम्र के लोग योगा कर रहे--

लगभग लाखों की संख्या में भीड़ होंगी उतनी ही भीड़--

यह एक साड़ी की दुकान है यहां पे बहोत अच्छी अच्छी साड़ियां बिक रही है ओपन एक भी साड़ी नहीं है।

जो फादर की बातें सुन रहे हैं और फादर बाहर निकल करके क्रॉस दिखा करके उन्हें उपदेश दे रहे--

सा अपनी सर्विसिंग करवाने के लिए और कुछ लोग इसकी सर्विसिंग कर रहे हैं कुछ लोग इंतजार कर--

ई सब नहीं है और धूप होने की वजह से--

यह एक चिड़ियाघर है और गार्डन जैसा भी लग रहा है।

वो यहाँ पे बिक रहे है और काफी रंग-बिरंगी अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में है।

यह एक लोकल नर्सरी है यहां सुंदर सुंदर फूल क्यों कि--

यह एक जंगल है और जंगल में एक एकांत स्थान है इन्हं एकांत --

और काफी हरियाली भरा माहौल है आम के पेड़ में फल आ चुके हैं।

कुछ को माहौल जो है वो दे रहा--